इस फोटो में सामने एक कीर्तन भवन दिखाया गया हैं जिसमें ऊपर की तरफ एक झूमर लगा हुआ है।

जिनके सिर पर मुकुट रख रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने कुछ लड़के दिख रहे हैं।

इस पर एक आदमी पेंट करता हुआ दिख रहा है।

उस कागज के टुकड़े हटाता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक आदमी और दिख रहा है जिसने एक शॉल ओढ़ा हुआ है।

सामने एक मेज़ और दिख रही है जिसके पास एक कुर्सी और रखी हुई है।

और कुछ मजदूर काम करते हुए दिख रहे हैं।

और एक लेंटर ढालने का मशीन भी खड़ा हुआ है जिसमे कुछ आदमी काम करते हुए दिख रहे हैं।

ऊपर कुछ घर दिख रहे हैं जिस पर कुछ डंडे लगे हुए हैं।

पीछे की तरफ कुछ पी_ओ_पी के कुछ तकते दिख रहे हैं।

इस फोटो में सामने बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है।

इसकी बाउंड्री पर बहुत सारे फूल के पेड़ खड़े हुए हैं।

नीचे की तरफ कुछ खंबे दिख रहे हैं जिनके ऊपर लाइट लगी हुई है।

और उसमें कुछ दवाइयां रखी हुई है जो की खेतों की दवाइयां है।

के आगे एक औरत एक आदमी खड़ा हुआ है जो की फोटो खिंचवा रहे हैं।

फोटो फ्रेम शीशों की दीवार पर लगे हुए हैं।

इस फोटो में सामने पहाड़ दिख रहे हैं।

सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जो की एक पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ है।

सामने कुछ पेड़ नीचे की तरफ खड़े हुए हैं और कुछ ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं।

सामने एक बड़ी सी बेंच पड़ी हुई है जिसके पीछे एक कुर्सी लगी हुई है।

पीछे की तरफ एक बड़ा सा पंडाल दिख रहा है जिसमें कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

केरेट में कुछ अखबार बीछे हुए हैं।

और अंदर की तरफ कुछ काले अंगूर रखे गए हैं जिसमें कुछ अंगूर छोटे हैं।

इस फोटो में सामने एक स्टेज दिख रही है।

और कुछ लड़के काम करते हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में सामने कुछ बच्चे मेज पर बैठे हुए हैं और अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

एक लड़का पीले चार्ट पेपर से कुछ बना रहा है।

और एक लड़का उधर की तरफ कुछ बना रहा है बॉक्स में।

इसके नीचे एक झूला लगा हुआ है जोकी लोहे का है।

ऊपर की तरफ जमे हुए फोन दिखाई दे रहे हैं और कुछ बूफर दिखाई दे रहे हैं।

और एक बड़ा सा खाल सा ग्रंथ का एक बड़ा सा डंडा खड़ा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक बड़ी सी मशीन दिख रही है जो की कूड़ा साफ करने की मशीन है।

और सामने मशीन कूड़ा साफ करते हुए दिख रही है।

इस फोटो में सामने एक कमरा दिखाया गया है जिसमें कुछ लाल रंग की कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

उसने एक कपड़े पहने हुए हैं जिसमें उसने घाघरा पहना हुआ है।

सामने की तरफ बहोत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं जिन पर घास उगी हुई है।

और एक फोटो के शुरुआत में ही दिख रहा है।

दुकान के ऊपर एक ए_सी_सी सीमेंट का एक पोस्टर लगा हुआ है और एक बैनर लगा हुआ है।

फोटो में सामने मकान दिखाया गया है एक बहुत बड़ा।

और एक बड़ा सा बहोत बड़ा मंच दिख रहा है जिस पर कुछ घास उगी हुई है तो कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

जिसमें एक मेज़ पड़ी हुई है बहुत बड़ी जिसके नीचे कुछ मिठाइयां रखी हुई हैं।

नीचे की तरफ एक ड्रम रखा हुआ है और मकान की खिड़कियां दिख रही हैं।

सामने एक रखा हुआ स्टूल दिख रहा है।

पीछे की तरफ एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसको किसी हिस्से को हाइड किया हुआ है।

और नीचे एक मेज पर गमला रखा हुआ है और कुछ क्यू_आर स्कैनर रखे हुए हैं।